में सफेद रंग की टाइल्स लगी हुई है और बीच में काले रंग की डिजाइन बनी हुई है।

ये एक गेट का फोटो है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है।

आदमी के हाथ में सफेद कपड़े हैं पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर ड्राई क्लीनर्स लिखा हुआ है।

दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर एक ई रिक्शा की फोटो है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है जिसका नाम यूनियन रेडियो एंड इलेक्ट्रिकल्स है।

किनारे एक झोपड़ी जैसी संरचना है जिस पर घास की छत है।

दीवार पर कार्टून कैरेक्टर्स की एक बड़ी पेंटिंग बनी हुई है जिससे माहौल और भी आकर्षक लग रहा है।

दृश्य के अंत में एक लाल और सफेद रंग का गेट दिख रहा है।

यह एक पानी रोकने वाला और उसके बाहर को नियंत्रित करने वाला स्ट्रक्चर है।

पीछे कुछ गेट दिख रहे हैं जो पानी के स्तर को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं।

कमरे में लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई है।

इसका नाम ज्योति मोटर बाइक्स एंड ऑटो पार्ट्स है।